यहां पर एक गुफा नजर आ रही है गुफा के आगे ए--

आदमी खड़ा हुआ हैं उसने चश्मा लगा रखा हैं ब्लू कलर की टी-शर्ट और पैंट पहन रखी हैं एक जैकेट पहन रखी हैं।

पैरों में चप्पल हैं उसके पास एक मोटा सा पत्थर पड़ा हुआ हैं।

और सामने को एक टीन सेट पड़ा हुआ हैं ब्लू कलर का--

अम्म गोए पेड़ छोटे छोटे से खड़े हुए है जिनके साइडों में जाल बंधे हुए हैं।

एक बा कार खड़ी हुई हैं एक टीन सेट और पड़ा हुआ हैं।

ये एक बेकरी हैं इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हैं यहाँ पर फूड --

अंदर के साइड को काफी सारी टेबले पड़ी हुई हैं बैलून लगे हुए हैं।

और चार पांच पीछे को और गोल टेबल हैं कुछ बल्ब लगे हुए हैं मोटे-मोटे से कुछ पेड़ खड़े हुए हैं।

औरस बराबर में एक और लाए एक्स कुछस टंगा हुआ हैं।

एक ब्लैक ट जैकेट टंगी हुई हैं एक चेक की शर्ट टंगी हुई हैं।

और सामने लैपटॉप रखा हैं कुछ राउंड राउंड बुक रखी हैं।

बराबर में ए सामने को दो चेयरें पड़ी हुई हैं सामने बराबर में एक डस्टबिन भी रखा हुआ हैं।

यहाँ पर एक घर हैं घर के बाहर दो पुलिस वाले खड़े हैं और एक पेड़ है पेड़ के नीचे खड़े हैं।

यहाँ एक बैलून का बहुत बड़ा सा दिल बना हुआ हैं दिल के बास बाहर बराबर में एक--

एक मूस बेड नजर आ रहा हैं एक टेबल दिख रही हैं आधी कटी हुई।

ये एक जिगजैग वाली अलमारी लग रही हैं इसमें काफी सारी बोतलें रखी हैं अलग-अलग कलर की कुछ पता नहीं बीयर शॉप नजर आ रही हैं कुछ बॉक्स नजर आ रही हैं।

यहाँ पर काफी सारे सोफे पड़े हुए हैं जो कि--

यहाँ पर एक पुतला खड़ा हुआ हैं पुतले ने रेड कलर की कुर्ती पहन रखी हैं रेड कलर का उसका दुपट्टा हैं।

साइड में एक जेंट्स बैठा हैं पीछे चेयर पे--

गाड़ियां चल रही हैं एक रेड कलर की गाड़ी है एक वाइट कलर की गाड़ी हैं चार पैया बाहन हैं।

पीछे सेग अम्म एक ग्रिल दिखाई दे रही है सड़क पर--

और पीछे एक खंभा पड़ा हैं कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ हैं उसने चश्मा लगा रखा हैं ऊपर से लोहे की कैप ओड़ रखी हैं।

यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पार्क हैं पार्क के बाहर साइड में--

एक वाइट कलर का गोल गाल चक्र बना हुआ हैं और दोनों तरफ साइडों में सड़क के थंबे लगे हुए हैं कुछ गमले लगे हुए हैं।

एक बराबर में छोटा सा काला सा कुछ सरिया सा नजर आ रहा हैं।

यहाँ पर कुछ पाइप टंगे हुए हैं एक घर बना हुआ हैं।

और एक आदमी म्म काम कर रहा हैं एक आदमी और खड़ा हुआ हैं एक आ--

कुछ ड्रम रखे हुए हैं जिनमें कि पेड़ लग रहे हैं कुछ बल्लियां बन रही हैं।

ये एक सड़क हैं सड़क पर सामने एक बाइक दिखाई दे रही हैं उस पर एक आदमी बैठा हुआ हैं।

बाइक चला रहा हैं और इधर कोई साइड में कु कुछ बूँग ए आदमी और औरतें चल रही हैं।

यहाँ पर एक बरामदा दिखाई दे रहा हैं इसमें तीन खंब खड़े हैं और एक दरवाजा हैं दो खिड़की दिखाई दे रही हैं।

इधर कुछ दरवाजा लगा हुआ हैं एक टंकी लगी हुई हैं।

और ऊपर को बिल्डिंग काफी बड़ी जा रही हैं पीछे से तार निकल रहे हैं सरिए दिखाई दे रहे हैं पिलर के--

यहाँ पर गाड़ीये हैं गाड़ी पर लिखा हुआ हैं सैनी ग्रेन सर्विस और उसके ऊपर कुछ सामान लाद रखा हैं पीछे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ घर बने हुए हैं एक बड़ा सा पेड़ हैं घर पे कुछ खिड़कियां नजर आ रही हैं।

और कुछ आदमी बाहर बैठे हुए हैं एक बराबर में बैठा हुआ हैं एक बिंच पड़ी हुई हैं सामने कोई एक स्टूल पड़ा हुआ हैं तीन सीढ़ियां जा रही हैं दुकान के अंदर--

ये एक ए_टी_एम है ए_टी_एम लिखा हुआ है बैंक ए_टी_एम --

और यहाँ पे सामने को ए_टी_एम के अंदर दो आदमी हैं एक के पीछे बैग टंगा हुआ हैं।

और यहाँ पर कुछ छोटा-छोटा सा सामान हैं एक रेड कलर की टेबल हैं कुछ लैपटॉप से नजर आ रहे हैं इधर साइड में कुछ चमचे से टंग रहे हैं।

बराबर में कुछ जीना जा रहा हैं और ये कुछ सामान जन टंग रहा हैं जल्ली वगैरह सी--

यहाँ पर रंग बिरंगा फ्लोर हैं जो कि ब्लू कलर का हैं और ऑरेंज कलर का हैं।

पेट पर बांध रखी हैं साइड में एक कुछ खिड़कियां हैं।

यहां पर काफी सारे सामान रखे हुए हैं कुछ सेव हैं कुछ टमाटर हैं कुछ अनार हैं।

काफी बड़े से पेड़ खड़े हुए हैं दो खंबे सामने को खड़े हुए हैं एक बिल्डिंग बनी हुई हैं।

पीछे से कुछ फैला हुआ सा एक पेड़ हैं कुछ पोस्टर दिख रहे हैं।

शटर दिखाई दे रहा हैं कुछ बोर्ड बोर्ड दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक टेबल हैं टेबल के ऊपर कुछ कागज रखे हुए हैं एक फोन रखा हुआ हैं और ये एक लैंप रख रखा हुआ हैं।

सेल्फ एक तकिया दिखाई दे रहा हैं एक चादर दिखाई दे रही हैं बराबर में को भी इधर को तकिया और चा बेड दिखाई दे रहा हैं।

हम्म आदमी पढ़ा रहा हैं कुछ लिख रहा हैं तीन बच्चे बैठे हुए हैं।

और एक सड़क जा रही हैं एक खंबा खड़ा हुआ हैं ये कुछ समान सा रखा हुआ हैं ये पत्थर सा--

एक सामने को टीवी टंगा हुआ हैं कुछ पेंटिंगें टंगी हुई हैं।

इधर को सामने एक मेरा रोड रखा है कुछ चित्र छपे हुए हैं।

और उसके बराबर में कोई एक पीछे को पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

बराबर में कोई एक ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है साइड में कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं।

अं तस्वीर लगी हुई है जिस पे कि हार टंगा हुआ है।

उसके बराबर में राम अम प्रमाण लिखा हुआ है और ये नीचे को रंग बिरंगे कपड़े रखे हुए हैं।

कुछ शंकर भगवान का एक स्टैचू नजर आ रहा है और एक ये --

इनन इस्टार मार्ट लिखा हुआ है नीचे दो मीटर लगे हुए हैं काफी सारी लाइट हैं कुछ कट्टे रखे हुए हैं।

बराबर में कोई एक बड़ा सा बॉक्स रखा है इधर सामने को कुछ --

पीसियाँ भी रखी हैं काफी सारा तारों का गुच्छा सा टंग रहा है।

और कुछ लाइटें लगी हुई हैं सामने एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है शीशे का --

यहाँ पर काफी बड़ी एक कंपनी सी नजर आ रही है यहाँ कुछ बड़ा सा ब्लू कलर के ग घर जैसे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोहे के सामान से रखे हुए हैं।

अं और ये एक बं रोलर मशीन खड़ी है सड़क बनाने वाली यहाँ पर घास है यहाँ एक मोटा सा पाइप जा रहा है और छोटे छोटे पाइप और जा रहे हैं।

और यहाँ पर काफी सारे पाइप भी लगे हुए हैं लोहे के हैं कुछ पतले पाइप हैं कुछ मोटे पाइप हैं।

यहाँ पर एक बाजार दिखाई दे रहा है बाजार में काफी सारे लोग हैं काफी दुकानें भी हैं और एक बराबर में कोई ये दुकान है एक ये इन तराजू रखा हुआ है।

यहाँ पर सामने की ओर काफी सारा सामान रखा हुआ है।

सीसा सीसा लगा हुआ है और सामने को चार कुर्सियाँ पड़ी ऐं दो टेबल है।

और दो तीन आदमी काम कर रहे हैं एक कट्टा रखा हुआ है।

पीछे को एक ग्रील सी रखी हुई है सरिए खड़े हुए हैं बराबर में एक मकान है।

के नीचे एक न गा गाड़ी खड़ी है वाइट कलर की एक खंबा र खड़ा हुआ है।

लिंटर पड़ा हुआ है और ये काफी बड़ा हुआ है ये बड़ा सा एक रेड कलर का बोट सा भी दिख रहा है।